यहां पर एक टेबल लगा हुआ दिखाई दे रहा--

पैलेस में झूमर भी लगे हुए दिखाई--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

एंड हेल्थ केयर सैलून भी लिखा हुआ--